कुछ बिल्डिंगे में भी दिखाई दे रही है और कुछ बिजली के तार भी नजर आ रहे हैं।

इस दृश्य में एक मैदान दिखाई दे रही है।

दृश्य में कोचिंग रूम की तस्वीर दिखाई दे रही है।

उसे पे जाली लगी हुई है और उसकी कलर पिंक और औरेंज है।

गाड़ी की कलर व्हाइट है और सामने कुछ आदमी भी नजर आ रहे हैं।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

सीसे पर इस्टील की जग भी रखी हुई दिखाई दे रही है ।

इसपे जालीदार डिजाइने भी बनी हुई है।

पानी की बोतल भी रखी हुई नजर आ रही है और चेयर भी रखे हुए हैं।

गम भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

इस दृश्य में बांध की तस्वीर दिखाई दे रही है।

एक फ्रिज भी रखी हुई दिखाई दे रही है।

इसके ऊपर लिखा युवा है रांची ट्रस्ट ट्रस्ट हॉस्पिटल ।